इस इमेज में एक जंगल है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और--

चेयर है गद्दे वाला और टेबल है।

और सामने में कार है कई सारे स्कूटी है और आगे एक आदमी बात कर रहे है कई सारे आदमी चढ़ नहीं रहे है और चढ़ --

यहां कपड़े साड़ी का दुकान है औ जो इसमे एक आदमी साड़ी इ कपड़े खोलकर दिख रहा है।

आज इधर काउंटर पे ये चेयर गया और टेबल पे--

अ चिप्स वगैरा कुरकुरे वगैरा का--

यह पुस्तकालय का इमेज लग रहा है और यहां पे कई सारे पुस्तकें भी हैं।

यह एक का इमेज लग रहा है जिसमें--

अ समुद्रो जैस समु म थोड़ा सा नदी जैसा लग रहा है और इसमे--

नदी जैसा है और पत्थर भी है और पत्थरों के बीच में से हल्का हल्का पानी भी आ रहा है।

अ इसमें उम्म पेट्रोल पम्प दिख रहा है पेट्रोल पम्प में--

यह एक तो फोटो फ्रेम जैसा है।

इस इमेज में खेल में एक मैदान है और उस पेड़ लगे हुए हैं।

इस इमेज में टेबल चेयर और जो एक लोग टेबल के ऊपर जो--